और सुराही आकार है और कुछ --

और इसमें विशेष रूप से पारले-जी भी रखा गया है।

यह किसी गार्डन का स्थान दिखाई दे रहा है जिसमें कई प्र अ कुर्सियाँ लगे हैं और वह --

झंडा लहराया गया है और ऊपर गेट रेलिंग जो लगी है वह काले रंग की है

जो कि बारिश होने ही वाली है और यह मनो दृश्य है।